और वो छत है जो टिने का बना हुआ है और पाईप लगी हुई है जो भूरे रंग की है।

सामने एक कार खड़ी है जो हबामे हे टंगाई हुई है लाल रंग की कार है।

बगल मे एक सफेद और निले रंग की फिसलंपट्टि पट्टी दी गई है गोल गोल सीडी दि गई है जो पाणी फूल से उपर चढ़ने के लीए अगल बगल घास लगी हुई है।

ने एक बेड है जो सफ़ेद रंग का चादर बिच्छा हुआ तकिय्या रखी हुई है।

बेड के ऊपर एक बॅग रखा हुआ है जो काले रंग का बॅग है।

सामने बहूत सारी गाड़ी खड़ी हुई जो काले रंग की एक हेलमेट रखा हु दो हेलमेट रखे हुए है। बाहर बहूत सारा पोस्टर लगा हुआ--

छत का रंग सफ़ेद है नीचे फर्ज़ किया गया है जो टाइल्स लगी हुई है आगे दीवाल का रंग भी सफ़ेद है।

नीचे घास लगी हुई है और एक फूब्बारा पाइप लगा हुआ है जो पानी फेक रहा है बगल मे फूल लगाए गए है जो गुलाबी रंग के और हरे रंग के पत्तिया पीले रंग के फूल है ऊपर के साइड पे बहुत सारे फूल लगे हुए जो लाल रंग की है।

कत्थे रंग के शटर है अंदर उपर के साइड पे बहुत सारे फीते लटके हुए है और सफ़ेद रंग के बिल्डिंग और नीले रंग के बिल्डिंग है।

इनमे एक बूक स्टोर का दुकान है जो बहूत सा तीन बॅग रखी हुई है कुछ पेन रखी हुई है।

और किराणा भी समान रखा हूआ है जो शाबून--